ये एक पेट्रोल पंप की जगह है जहाँ पे उसके पास दो पिलर खड़े हुए हैं पेट्रोल भरने के लिए दो मशीन लगी हुई हैं।

ये एक किताब की दुकान है जहाँ पे बहुत सारी अलग-अलग तरह की किताबें पड़ी हुई हैं।

और वहाँ पे बेठने के लिए कुछ जगह भी बनी हुई है और वहाँ पे एक लेडी कचरा निकाल रही है।

यह एक होटल का फोटो है अ इस होटल का नाम होटल राज है।

और यहाँ पे ये अलग ही तरीके का होटल बनाया हुआ है और यहाँ पे ये सफेद और ऑरेंज रंग का होटल है।

और ये सब पीले रंग के हैं। यहाँ पे कुछ वेट का वजन का समान भी रखा हुआ है और यहाँ पे सामने एक काँच भी लगा हुआ है।